सारे पौधे-वौधे दिखाए जा रही है कुछ जानवर है जो कि कुछ खा --

बहुत सारे चेयर टेबल रखे गए हैं एक आदमी है जो कि फोन पर बात कर रहा है टेबल पर ब--

एक ग्राउंड टाइप का बना दिया गया जिसमें एक बोहोत बड़ा सा पेड़ है काफी सारे आदमी और लेडिस को दिखाया गया है रोड टाइप का बनाया गया।

एक घर दिखाया जा रहा है घर पे काफी खिड़कियाँ दिखाई जा रही हैं एक सीढ़ी दिखाई जा रही है जो बांस की है।

एक बहुत बड़ा सा घर दिखाया जा रहा काफी फ्लैट वलेट दिखाए जा रहे टिकट विकट--

डाक वाक को देने के लिए एक उम चिट्ठी विट्ठी टाइप का लाल सा बना करके रख दिया गया पुल है उसपर काफी सारे--

और काफी सारे बोर्ड वोर्ड भी दिखाये जा रहे है रोड के बीच में एक नाला टाइप का बना दिया गया है उसमें काफी रु--

कुछ डमी टाइप के हाफ हाफ रखे गए हैं उनमें भी कुछ कपड़ों को रखा गया है बाहर पर एक आदमी है जो कि अंदर पर है और को --

बहुत घने-घने से जंगल दिखाए जा रहे हैंजो कि काफी बड़े-बड़े से उसमें पेड़--

ये पानी का टंकी दिखाया जा रहा बहुत बड़े बड़े से पेड़ दिखाए जा रहे पहाड़ टाइप के दिखाए जा--

बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाए जा रहे हैं जो कि बैठे हुए हैं चेयर्स प--

और दो-तीन लड़के हैं जो कि खड़े हैं दो आदमी खड़े हैं।

स्प्लेंडर रखा गया है एक आदमी है जो कि बैठा हुआ है।

एक स्टेशन टाइप का दिखाया जा रहा है जिस पर एक गार्ड बैठा हुआ है और एक आदमी बैठ कर के फोन चला रहा--

एक रोड टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें साइड में बहुत सारी ईंटे ऊंटे रखी गई हैं सजा कर--

एक घर दिखाया जा रहा है एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाया जा --

एक घर दिखाया जा रहा है जो कि काफी बड़ा दिखाए जा रहे हैं बोर्ड दिखाए जा रहे हैं एक इंडियन बैंक दिखाया गया--

एक बहुत बड़ा सा घर दिखाया जा रहा जिसमें खिड़कियां दिखाई जा रही है खिड़कियों पर काफी कांच वॉच दिखाए जा रहे हैं।

ल्डमें बहुत सारे पौधे-वौधे हैं एक पोल है पोल पर एक लाइट --

एक केले का घास दिखाया जा रहा है छोटे-छोटे पौधे-वौधे दिखाए जा रहे हैं घर--

एक गणेश जी का पिक्चर बना कर के रखा गया ऊपर पे झूमर है झूमर पर लाइट --

वायरिंग का काम किया गया काफी सारे फोटो ओटो रखे गए हैं चेयर्स है नीचे फर्श पर मार्बल ओरबल टाइप के बिछाए गए विंडो दिखाई जा--